साइकिल का सीट प्लास्टिक से बंधे हुए नजर आ रहे हैं।

एक सीढ़ी भी दिख रही है और बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है बिहार साइकिल ऑटो ।

पोस्ट ऑफिस नजर आ रहा है और आदमीया नजर आ रहे है।

गेट नजर आ रहा है एक खंभा नजर आ रहा है वायर नजर आ रहे हैं।

और किनारे में बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं।

और ब्लैक कलर की नाव जैसी नजर आ रही है।

एक लंबा सा हॉल जैसा रूम नजर आ रहा है और गेट भी नजर आ रहा है।

लाल कलर की दरी बिछी हुई नजर आ रही है।

लगे हैं गमले में पौधे लगे हुए हैं।

तीन चार लोग नजर आ रहे हैं।

एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स नजर आ रहा है खिड़कियां नजर आ रही है बालकनी नजर आ रहे हैं।

एक नाव नजर आ रहा है आसमान नजर आ रहा है।

बहुत सारे छोटे साइकिले नजर आ रहे हैं पीछे का चक्का में दो एक्स्ट्रा चक्का छोटे लगे हुए हैं।

डेकोरेशन बहुत सारा किया हुआ नजर आ रहा है।

एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है उसके ऊपर एरो का चिन्ह है।

फोटो में लिखा है मोड एंड्रॉयड द मिरर का बेटी ।

साइड में स्कूटी एक आदमी ले जाता हुआ दिख रहा है।

उपर बोर्ड में लिखा है ओ_ए_के गौरव लोंगे बार अर रेस्टोरेंट ।

बहुत सारे बाईकें नजर आ रही हैं।

एक औरत साड़ी और गजरा लगा के नृत्य करती हुई नजर आ रही है।

आदमी कुछ बैठे हैं कुछ खड़े हैं।

गिट्टिया और ईंटे नजर आ रहे हैं।